गेट वगैरा भी देख रहे हैं। आप यहां पे देख सकते हो।

आदमी दिख रहे हैं ये यहां पे बूको की दुकान दिख रही है आप--